उजी जामनी वमनी लगा हुआ है पूरा सजावट किये हुए है यहाँ एक आदमी है जो जमीन में लेटा हुआ है उसके पैर को ऊपर करके कर रहा है |

सामने में लगा हुआ है निचा नीचे में ग्रीन ऑरेंज कलर का कारपेट बिछा हुआ है।